यह बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे होंगे ।

यह स्कूल में अनेक से मैडम भी हैं ।

यह बिल्डिंग में बहुत सारे खिड़कियां भी है ।

यह स्विमिंग पूल में बहुत सारे बच्चे नहाते हैं ।

यह मछली हमलोग इसे हमलोग मांगुर कहते हैं ।

एक लड़का यहाँ पर खड़ा है ।